खेले वाला स्थान ह बच्चे मस्ती करेला --

ई कालोनी के फिल्ड ह। इ गार्डन यहाँ सब टेह ले ला।

पेड़ पे चडल ह इ लड़का फिर उके बाद सुबह पन फोटो खिचल अ घूमके फिर नदी अ ल--